एक ईमारत है जो कि हल्का नारंगी रंग का है।

एक इमारत तामीर हो रही है।

भूरा और सफेद है।

एक दुकान है जिसमें लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाएं हुए हैं।

मिट्टी की चौड़ी सड़क है।

एक बड़ी सी पीले रंग की इमारत है।